एक मकान है बड़ा जैसा मकान है और उस मकान में टाइल्स बैठा हुआ है।

और बोहोत सारे पेड़ हैं और सुबह का टाइम सूरज का किरण भी दिखाई दे रहे हैं।

कॉलेज है। बड़ा जैसा कॉलेज है और बोहोत बड़ा कॉलेज है। गेट लगाया गया है।

उधर भी पेड़ हैं। उधर बोहोत सारे पेड़ हैं। बोहोत सुन्दर --

फूल का माला भी है। बहोत सारा माला भी पहने है। फूल का माला भी पहना है। वहाँ गेट है। पर्दा लगाया हुआ है।

कुछ हो रहा है यहाँ --

और बोहोत सारे सामान हैं और --

और यहाँ लाइन का ट्रांसफार्मर भी है। वहाँ अलबेस्टर से घेरा हुआ है चारो तरफ घेरा हुआ है।

पर्दा लगाया गया है सुन्दर सा झालर लाइट ल --

उधर बिल्डिंग भी है। बड़ा जैसा बिल्डिंग है उधर और पेड़ भी हैं और बोहत सारे अदमी है।

बहुत तार के गट्टे पड़े हुए है और यहाँ पर --